इस फोटो में रात का समय दिखाई दे रहा है यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

ये क्या पर्पल रंग का यहां पे कपड़ा दिखाई दे रहा है।

दीवार पे लाइट कलर का पेंट किया हुआ है बाहर से धूप आई हुई दिखाई दे रही है।

उसके सामने वाली दीवार जो है वो पीले रंग की दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं मंदिर पर पिले रंग की लड़ीया लगी हुई है।